एक गेरेज है गेरेज मे गाड़ी रखी हुई है दो पिलर रखे हुई है खिड़की लगी हुई है सामने अ धूप दिखायी दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।

एक एम्बुलेंस गाड़ी दिखाई दे रही है एक पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ पत्तियां दिखाई दे रही है एक फर्श दिखाई दे रहा है और एक सीट दिखाई दे रही है।

एक बस स्टैंड है जिसमे एक आदमी झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहा है ऊपर एक पुल है पुल के ऊपर जाली लगी है।

एक मैदान है मैदान में एक बड़ा ट्रक रखा हुआ है एक बड़ी बाल्टी रखी हुई है।